खंभे दिखाई दे रहे हैं ऊपर व्हाइट कलर के पट्टी लगी दिखाई दे रही है बहोत सारे कंकड़-पत्थर इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर सीढ़ियां दिखाई दे रहे है। सीढ़ियां कुछ येल्लो कलर की दिखाई दे रही है कुछ सिंपल दिखाई दे रहे है। एक आदमी दिखाई दे रहा --

मुझे बहुत सारी बोलेरो कारें लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक ऑरेंज कलर की बस दिखाई दे रही है नीचे बस बुकिंग सर्विस सेंटर लिखा दिखाई दे रहा है।